पढ़ पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं वह इसके नीचे दरपट्टि --

बेड के नीचे बैठा हुआ है और चारों ओर मिट्टी ही मिट्टी हैं और कुछ घर भी दिखाई से रहें हैं।

और उसके पास में एक चेयर है जो जोकि ब्लैक कलर की है और उसके पास में सफेद कलर का कट्टा पड़ा हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे एक जगह ऐसी दिखाई दे रही है जहां बहुत सारे व्हीकल्स स्कूटी आदि खड़े हुए हैं।

इस तस्वीर में मुझे भारतीय डाक विभाग का एक डिब्बा नजर आ रहा है डिब्बे का कलर लाल रंग का है व इसके नी --

गाड़ी खड़ी हुई है व इसके बाहर चेयर्स लगी हुई है और--

और इसके चारो ओर वनस्पति है।

इस तस्वीर में मुझे एक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जिसमें --

इस तस्वीर मे मुझे कुछ गमले दिखाई दे रहे है फूलों से भरे वे इसके नीचे मिट्टी है और ये एक --

है जो कि सफेद रंग की है व इस कमरे का रंग--

इस तस्वीर में मुझे इंडियन आइसक्रीम कुल्फी फालूदा नामक जगह दिखाई दे रही है जिसके अंदर कुल्फी आइसक्रीम आदि --

कॉफी जो कि अर्बन यूनीटेड और इनके बाहर सुंदर सफेद रंग की कारें खड़ी हुई है।

जिसमें काफी आदमी इकट्ठा हुए हैं और इन इनके बाहर कई आ --

इस तस्वीर में मुझे दो इंजीनियर वर्कर्स दिखाई दे रहे हैं जो की बिल्डिंग्स का काम कर रहे हैं व इसके पास में दो--

जोकि थाली में परोसी गई है व इसके पास में एक अखबार का टुकड़ा भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में कुछ शादी के टेंट लगे हुए हैं वह इसके चारों ओर गार्डन बना हुआ है वह गार्डन के बीच में कुर्सिया लगी हुई है।